और पे नीचे के साइड पूरा घास-पुश है।

एक बोतल भी है जिसका कलर व्हाइट है।

और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है।

जिसका कलर रेड और वाइट है और बगल में घास फूस भी है।

यह है कॉलेज का दृश्य है जहां पर अनेक आदमी खड़े हैं।

जहां पर बहोत सारे साड़ी रखे हुए हैं और बहुत सारे शीशे भी है यहां पर।

और सामने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और दो ठो लेडिस वहां पर खड़े हैं किनारे में।

यह एक बगीचा का दृश्य है यहां पर बहुत सारे फूल पौधे लगे हुए हैं।

और यहां बांस रखा हुआ है बांस के मदद से तिरपाल गाड़ा हुआ है।

यह एक अस्पताल का दृश्य है यहां पर जिसका बिल्डिंग का कलर है भूरा और वाइट कलर का है।

यहां पर एक लाइट भी लगा हुआ है और हिंदी में अस्पताल लिखा गया है।

यह एक सड़क का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी लोग खड़े हैं।

अम आज सीमेंट का भी बनाया गया है खड़ा है और एक फुटबॉल भी है यहां पर।

और यहां पर एक शीशा भी है जो वाइट कलर का दिख रहा है।

वह है येलो कलर का और ड्राम भी है ब्लू कलर का।

और यहां पर गेट का भी कलर है लोहे का मदद से बनाया गया है।

यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है।